ये एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें ये बहुत बड़ा लोहे का गेट लगा हुआ है यहाँ पे कुछ खिड़कियाँ भी दिखाई दे रहीं हैं और --

यहाँ पे एक हॉस्पिटल की पिक्चर हैं जहां पे हॉस्पिटल की दिवलो का कलर ग्रीन और वाइट हैं कुछ गेट भी दिखाए दे रहा है।

यहाँ पे एक बिग बाजार का पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पे मकान दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है यहाँ पे कुछ रिक्शे भी दिखाई दे रहे हैं और --